गेट है पेड़ हैं वायर है।

इस तस्वीर में एक गार्डन है उसमें पुल बना हुआ है।

और सूरज है आसमान दिख रहा है पानी है जमीन है।

और इधर खंभा लगा हुआ है वायर है टावर बना है।

इस तस्वीर में एक खेत है दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक एक्टिवा है एक ब्लूड है।

उसमें पानी है ग्रीन कलर का है गजी वाला और कुछ पेड़ लगा हुए हैं।

जैसे की बाल्टी है कंप्यूटर है।

और बहुत सारे पेड़ लगा हुए हैं येलो कलर का स्कूल है।

इस तस्वीर में एक अंकल हैं वो मछली बेच रहे हैं एक क्रेट में मछलियाँ रखी हुई है एक डलिया रखी हुई है।

बहुत सारी लाइट्स हैं येलो कलर के पर्दे हैं ऑरेंज कलर की टेबल ए पे --

तस्वीर में एक गार्डन है उसमें बहोत सारे गमले रखा हुए है उसमें पेड़ लग हुए हैं।

इस तस्वीर में एक कॉलेज है।

उसमें कुछ लोग है एक अंकल है उनका फेस ब्लर है।

चित्र में एक गार्डन है उसमें एक--

और जीने है और बहोत सारे पेड़ है।

अर मंदिर के बाहर फोर लिखा हुआ है मंदिर का बड़ा सा गेट है बाहर--

द रेलिंग लगी हुई है बेरीकेट लगा हुए हैं।

और कुछ लोग बैठा हुए हैं बार वाइट कलर की कार --

बहोत सारा पानी है वाइट कलर की क्रूस है और उसमें बहोत सारी विंडो लगी हुई हैं एक ऊपर है एक नीचे है।

इस तस्वीर में एक दुकान है उसमें बाहर बहुत सारे गमले रखा हुए हैं बहुत तरीके के रेड --

अ खिड़कियां लगी हुई है वाइट कलर की--

और डॉगी का इलाज कर रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं।